और कुछ झींका-झींके भी दिखाई दे रहे यहाँ एक लौडी-लेडीस जो झिंके में इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है पीछे एक व्यक्ति और खड़े और बैठे नज़र आ--

आसमान दिख रहा हैं धूप निकली हुई हैं और ये दिन का समय हैं।